यहां पर कुछ बस भी दिख रही है कुछ कार भी है कुछ ठेले भी लगे हुए हैऔर बहुत सारे ड्रेस दिख रहे है यहां पे बहुत बड़ा रोड है यहां पे टू लाइन--

और यहां पर छोटा-छोटा घास भी बगल में दिख रहे है तार भी दिख रहा है लाइट का और

और रेड कलर के गुब्बारे हैं पिंक कलर के है पर्पल कलर के --

उस पर चद्दर भी डली हुई है और यहाँ पर आसमान दिख रहा है।

और कुछ स्टूल भी रखे हुए यहाँ पर कुर्सियां भी रखी हुई है और कांच की खिड़की भी लगी हुई है यहाँ पर और कुछ तार भी है बादल भी दिख रहा है यहाँ पर।

यहा पर बहुत सारे दुकाने है सब मे खाने-पीने का सामान रखा हुआ है अलग-अलग तरह के और यहां पे एक बाल्टी रखी हुई है।

यहा पर बहुत बड़े-बड़े झाड़-पेड़ भी देख रहे है और यहा पर कजी जमी भी है यहा पर आसमान भी दिख रहा है।

यहाँ पर जिम की मशीनें रखी हुई है ब्लैक कलर की और येलो कलर की यहाँ पर टाइल्स लगे हुए हैं।

यहाँ पर दो डॉक्टर है एक डॉग का इलाज कर रहे है और एक ने मास्क पेहेन रखा है और चस्मा पेहेन रखा है।

यहाँ पर सुई भी रखी हुई है और यहाँ पर कुछ बॉटल भी रखी हुई है।